चूड़ी की दुकान है जिसका नाम है संदीप बैंगल स्टोर और इसमें ढेर सारी चूड़ियां बिकती है। नीचे वाले दुकानों पे लगी हुई है।